यहाँ पर हमें एक जंगल दिखाई दे रहा है। जिसम बोहोत छोटी छोटी घास दिखाई--

यहाँ पर हमे एक अ ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है। जिसमे छोटी छोटी हरी हरी घा--

आसे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है। वो भी हरे भरे है। कुछ फुल के पेड़ है। यहा पर हमे कुछ लोग दिखाई दे रहे है। और कुछ लाइट के खंभे।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

बहुत सारी डिब्बिया रखी हुई है। बहुत सारी पैकेट रखी हुई है और बहुत सारी छोटी-छोटी फ़ुनफ़िया रखी हुई है।

रुई है एक रुसकपट्टी रेड कलर की है और एक रुसकपट्टी येलो कलर की है यहाँ पर हमे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है हरे-हरे बड़े-बड़े पेड़ है।